आपका फिर से स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम do व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे
इसको do व्हाइल स्टेटमेंट भी कहा जाता है
आप चाहें तो इसे लूप या स्टेटमेंट बोल सकते हैं
इसका आधार व्हाइल लूप के समान है हालाँकि कंडीशन लूप के अंत में जाँची जाती है न कि प्रारंभ में
हमारे पास डीओ है हमारा ब्लाक कर्ली कोष्ठकों में है और अंत में व्हाइल है
फिर कंडीशन यहाँ पर है
अतः यह कन्डिशनconditionशर्तहै
अब मैं एक छोटा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि हर बार संख्याओं की वृद्धि करूँ और प्रत्येक लाइन पर एको हो जैसा कि मैंने मेरे व्हाइल loopलूपमें किया
अब कंडीशन है जब संख्या 10 पहुँचती है मैं चाहता हूँ कि नेम नामक एक वेरिएबल दूसरे नाम में बदल जाए जहाँ पर लूप समाप्त हो जाएगा
मैं शुरू करने के लिए नुम 1 टाइप करता हूँ
फिर मैं माय नामे इस एलेक्स टाइप करूंगा
लूप की कंडीशन जो मैं चाहता हूँ है व्हाइल थे नामे एलेक्स जब तक नेम एलेक्स है यह लूप करेगा
अतः किसी स्थान पर हमें एक विशिष्ट कंडीशन कहनी पड़ेगी नेम को बिली में बदल दीजिये और फिर लूप आगे नहीं बढेगा क्योंकि नेम अब एलेक्स के बराबर नहीं है
अब हम डीओ लूप के भीतर एक इफ स्टेटमेंट सम्मिलित करेंगे
याद रहे आप रख सकते हैं इफ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स के भीतर इफ स्टेटमेंट्सstatements लूप्स के भीतर इफ स्टेटमेंट्सstatements लूप्स के भीतर लूप्स और आपके कुछ भी करने में वास्तव में कोई पाबंदी नहीं है
जब तक आपका कोड काम करता है और ठीक से चलता है और अनंत मान नहीं बनाता है आप ठीक हैं
अब जो हम टाइप कर रहे हैं डीओ है
सबसे पहले नंबर का मान एको करें
आप लाइन को ब्रेक करने के लिए इसे एक छोटे से एचटीएमएल कोड के साथ जोड़ सकते हैं
यहाँ पर मैं num टाइप करूँगी जोकि नुम 1 के समान है
फिर मेरा इफ स्टेटमेंटstatement इफ नुम इस ग्रेटर थान ओर इक्वल टो 10 थेन नो एचो यदि नुम 10 से बड़ा या बराबर है तब एचो न करें
मैं नाम बदल कर बिली करना चाहता हूँ
चलिए मैं संक्षेप में फिर से दोहराता हूँ
याद रखिये मैं यहाँ पर कर्ली कोष्ठकों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक लाइन का कोड है जिसे इफ स्टेटमेंट के बाद ब्लाक में निष्पादित करने की जरूरत है
अतः मुझे केवल एक लाइन के कोड की आवश्यकता है क्योंकि यह ठीक दिखाई पड़ता हैं
अतः चलिए मैं संक्षेप में दोहराता हूँ जो मैंने किया है
मैंने नंबर को 1 रखा है
यह मेरा नंबरवेरिएबल हैयह वृद्धि कर सकता है और उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित कर सकता है
मैंने अपना नाम एलेक्स सेट कर रखा है
हम डीओ शुरू करते हैं
नाम अभी भी एलेक्स है
यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है अतः यह बिना किसी की परवाह किये रन करेगा
हम इसे 1 से बढ़ा रहे हैं जोकि 2 के बराबर होगा
अब हम कहेंगे यदि नंबर जो कि अभी 2 है 10 से बड़ा या बराबर है जोकि यह नहीं है तब इसके माध्यम से जारी रखें
यह नहीं है
अतः इसे छोड़ दीजिये
यह कहेगा नाम एलेक्स
और फिर पुनः सबसे ऊपर जाएगा
यह अभी भी 2 होगा
इसका मतलब लूप कोड के इस ब्लाक में फँसा है
यह 2 एको करेगा
यह एक जोड़ेगा और कहिये 3
और फिर यह कहेगा क्या 3 10 से बड़ा या बराबर है
अभी यह नहीं है
अतः नाम बिली में नहीं बदला है बजाय इसके यह बाकी अपने कोड को जारी रखेगा
नाम अभी भी एलेक्स है
अतः लूप जारी रहेगा
इस मामले में यह तब तक जाएगा जब तक यह 10 तक न पहुँच जाए किन्तु 9 उपयोगकर्ता के लिए एको होगा
अब नुम 10 हो जाएगा
इफ conditionशर्त ट्रू सही हो जाएगी
नाम बिली सेट करते है और व्हाइल कंडीशन में यह एलेक्स के बराबर नहीं होगा
अतः व्हाइल लूपरूक जाएगा और नीचे यहाँ कोड जारी रहेगा
अतः चलिए इस कोड का निष्पादन करते हैं
इस पर क्लिक करें
अच्छा तो हमें 1 2 3 से लेकर 9 तक सभी मिल गए
स्पष्ट रूप से हमारी कंडीशन पूरी हुई है
हमारा नाम बिली में बदल गया है
हमारा नाम एलेक्स के बराबर नहीं रहा
अतः हमारा लूप यहाँ पर रुक गया है
अब इफ को 11 में बदल दीजिये या आप नुम को 0 में बदल सकते हैं
अब यह काम नहीं करेगा और आप देखेंगे कि क्यों
हमें 0 से 9 तक मिला
इसका कारण आपका शुरुआती नंबर है
यह क्या करेगा कि जैसा मैंने पहले बोला था यह वर्तमान के नंबर को एको करेगा फिर उसमें 1 की वृद्धि करके बदल देगा और फिर यह इसकी इफ स्टेटमेंटstatement में तुलना करेगा
अतः आप जो तुलना कर रहे हैं जो आप देख नहीं सकते
यदि आप इसे 11 में बदल देते हैं आप इसकी तुलना 11 से करेंगे फिर इसे बिली में बदलेंगे और फिर यह लूपरुक जायेगा
हम कभी भी 11 का मान नहीं देख सकते यह केवल एक भीतरी तुलना है
यदि हम इसे रिफ्रेश करते हैं हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 1 से 10 तक है
यह मूलतः do व्हाइल लूप है
भले ही यह काफी समान है किन्तु जब आप प्रोग्रामिंग को तर्क के रूप में देखते हैं तो उस समय do व्हाइल लूप व्हाइल लूप की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है
कुछ मामलों में हो सकता है यह अधिक उपयोगी हो
अतः इसका अभ्यास करिए और कुछ मान रख कर देखिये
इसके साथ ही मैंने तुरंत जो प्रोग्राम बनाया है उसे पुनः बनाने की कोशिश करिए
जल्द ही लूप्स पर और ट्यूटोरियल्स होंगे अतः देखते रहिये
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद